और लग भी रहा है यार जो कि काफी अच्छा है।

काफ़ी बड़ी लम्बी रेली है।

और इसमें जो रपटनी है ये भी कितनी अच्छी है और कितना सारे थमले लगे हुए हैं कूदने की जगह भी काफी अच्छी है।

और इतना घेरा भी नहीं है ये।

जो कि काफी अच्छा है और बात कर रहे हैं यहा पे लोग --

काफी मनी ट्रांसफर में भी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होती।

देखो यहाँ हम अपनी गाड़ी वगैरह दुलवाते हैं।

देखो भाई ये कितना बढ़िया मकान है और कितना ऊंचा बना हुआ है।

देखो भाई ये यह नाव कितनी बड़ी है।

नहर के बारे में यहाँ के बारे में।

यहाँ एक शादी है और इसने मंडप को कितने अच्छे से डेकोरेट कर लेगा।

ने एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान देखी।

देखो भाई ये एक मैदान था।

यहाँ जेनेटर भी रखा है।

गुब्बारे लगा रखे हैं गुलाबी बिलो और वाइट कलर के जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं।

और यहाँ से हम तेल डलवाते हैं गाड़ी में बहुत-बहुत दूर का सफर कर लेते हैं बहुत अच्छा है।